फूल पत्ते घास लगे हुए हैं ।

सड़क है और यहाँ पे काफी लोग भी हैं यहाँ पेड़ भी है हरे-भरे काफी सुंदर है।

यह एक दुकान हैं छोटा सा दुकान हैं जिसमे ढेर सारे सामान रखे गये हैं ।

शैम्पू बहुत से चीज़ हैं और काँच के --

लिखा हुआ भी हैं आई लव पटना भारत पेट्रोलियम --

अ यहाँ पे कई रंग फूलों का डेकोरेट किया गया हैं।

और उस साइड बहुत पेड़ और घर भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे जिम की सीट जो हैं मैरून कलर में हैं ब्लैक कलर में यहाँ की सारी मशीनस हैं और यहाँ पे फेन भी लगा हुआ हैं ।

बड़ा सा साउंड भी लगा हुआ हैं और काफी लेडीज और जेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं।

अ जिसको ढाला गया हैं नीचे बहुत सारे गिट्टी हैं ।

और ईट भी रखे हुए हैं ऊपर भी कुछ फ्लोर बना हुआ हैं ।

और यु उद्योग विभाग बिहार सरकार की बोर्ड भी यहाँ पे लिखी हुई हैं ।

और यहाँ पे लिखा हैं इंस्टी इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटरप्राइजेज --

ओहो नारियल का पेड़ हैं और काफी --

हरा भरा हैं यहाँ पे पीछे साइड छोटा सा तालाब भी हैं यहाँ पे --

और रूम के दीवार पे यहाँ पे सेन्टाक्लॉस का बील न बिल्ली का और डॉग का यहाँ पे --

यहाँ गड्डे में पानी है भारी मात्रा में इधर पानी है और पानी में जे_सी_बी डूबा हुआ है।

अब बहुत सारी लेडीज और जेंट्स हाई क्लास के हैं ये लोग तो यहाँ पे अपना पढाई कर रहे हैं ।

और ग्रीन कलर का उसका दीवार है और सामने कुछ झाड़ हैं पेड़ो के--

मरून कलर में है अंदर स्काई कलर है शटल लगा हुआ है काफी सारे छोटे छोटे गमले है।

उम ढेर सारी मछलियाँ है यहाँ पे कुछ लोग भी है।

हेल्लो जैसा की आप देख सकते हैं ये दो कपल है ।

ये मैरिज हॉल है और यहाँ पे काफी सुंदर सरीके तरीके से डेकोरेट किया गया है ।

अ कुछ चेयर और मेज भी रखा हुआ है आप देख सकते हो ।

यहीं पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ भी है।